और डेकोरेशन और खाने पीने का समान रखा हुआ है।

बंद हुआ दिख रहा है।

यहां पर हार्डवेयर स्टोर दिख रही है।

अनेक प्रकार के कपड़े दि--

एक दुकान दिख रही है।